पंद्रह अगस्त के दिन जैसे लगते हैं झंडे।

पुल के चारों तरफ दिए जलाए हुए हैं जो बहुत अच्छे से उनकी पूजा कर रहे हैं जो बहुत अच्छा दिख रहा है।

बहोत सारे लंबे-लंबे पेड़ दिख रहे हैं। उनके आजू-बाजू बहोत सारी मिट्टी फैली हुई है।